पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं पहाड़ जैसे मोटे मोटे पत्थर कुछ पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और--

देख सको ये पोस्टर लाग रहे हैं इसमें काफी लेडिस हैं और--

ये फोटो हम देख सके है इसमें घडी नाव खाड़ी दिखे है।

काफी पर्दे वगैराह लगे हुए हैं आप देख सको लाइटिंग --

आगे नया आप देख सको धुंधली धुंधलि एक--

और काफी पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं ई_रिक्शा है बस है जो चलती हुई नजर आ रही हैं काफी आदमी जो पैदल चल रहे हैं।

यहां पर दीवार पर बलूंस लगे हुए हैं और पेंटिंग वगैरह हैं ए_सी है।

गने पत्थर पात्थर पड़े है और देख सको इसम त शायद--

सबसे बड़ा गेट है और देख सको ये कितना डेकोरेट कर रखा है जिस में फूल और पत्ते आते है डिजाइन कर रखे ऊपर झंडे से भी लगा राखे और--

कम्पनी से कुछ बन रही है बिल्डिंगे जिसपे येलो और आप देख सको चॉकल्टी कलर का पेंट हो रहा--